ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ हैं ।

साइड में एक स्कूटी भी लगी हुई है दो डलिये भी रखे हुए हैं नापने की मशीन के ऊपर एक डलिया रखा हुआ है।

सभी पेड़ हरे भरे हैं सामने एक बाइक दिखाई पड़ रही है जिसमें ब्लू ब्लैक और व्हाइट कलर है।

दो खिड़की भी दिखाई पड़ रहे हैं।

इसके बगल में एक दु उधर दुकान भी है जो ऑरेंज कलर की हैं।

दुकान और घर के चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं।

यह देवघर के नौलखा मंदिर का चित्र लग रहा है।

ऊपर मारवाड़ी भोजन गृह का बोड लगा हुआ है।

इसके नीचे माला लगा हुआ है।

पिक्चर में एक स्टेज बना हुआ है।

उसके बगल में सैमसंग श्यओमी का दुकान है।

कुछ तोते हल्की ग्रीन है तो कुछ तोते डार्क ग्रीन कुछ तोते उजले हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा खाली खेत या मैदान दिखाई पड़ रहा है जहां पर दो छोटे छोटे हट बने हुए हैं।

कुछ खेतों के चारो बगल छोटे छोटे पौधे हैं।

इसके चारों तरफ छोटे छोटे घास है।

बहोत सारी दवाइयां भी रखी हुई हैं।

दीवाल पर बोर्ड लगा हुआ है तथा दूसरी तरफ पेंट कर के लिखा गया है।

अंदर बहुत बड़े पेड़ हैं।

रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी फोन पर बात कर रहा है।

एक आदमी धोती पहन हुआ है अंदर पानी में एक आदमी और एक औरत है।

चेयर भी रखा हुआ है जो गोल्डन कलर का है उस पर एक बच्ची खड़ी है।

मशीन उजले कलर की है मशीन के नीचे बैठने वाला है।

इस चित्र में एक व्हाइट कलर का घर दिखाई पड़ रहा है।

इस चित्र में लोहे के बहोत सारे कुछ बने हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ छोटे हैं तथा कुछ बड़े हैं।

यहां पर बहोत सारी स्टील के बनाए गए हैं दो बोर्ड भी लगा हुआ है यहां पर दो आदमी भी दिखाई पड़ रहे हैं।

ये सामने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है किसी के आगे तबला रखा हुआ है।

चित्र में एक बहोत बड़ा नदी दिखाई पड़ रहा है जिसका पानी हल्का ग्रीन कलर का है।

नाव से एक रस्सी पानी की ओर बंधी हुई है एक दो तीन आदमी रस्सी को पड़कर खड़े हैं।

यहां पर झूले जैसा वाटर में आने के लिए बना गया है सामने एक बोड भी लगा हुआ है।

बोर्ड के बगल में दो तीन ग्रीन कलर चेयर भी रखी हुई है सामने पानी का बोटल रखा हुआ--

सीढ़ियां भी है उससे एक आदमी आता हुआ नजर आ रहा है।

लंबी सड़क दिखाई पड़ रही है जिसमें व्हाइट कलर के निशान है।

इसके बाहर दो कार लगी हुई है।